इसके अंदर दो महिलाएं और दो पुरुष काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि बहुत विशाल है।